हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम दे हमे बहोत सारी कुर्सियाँ और टेबल दिखाई दे रही हैं।

एक और बच्चा बैठा हुआ है। दूसरी कुर्सी पर भी एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

देख पा रहे हैं यहाँ पर हमे एक घर दिखाई दे रहा है जोकि सफ़ेद कलर का है। पीछे और भी घर दिखाई दे रहे हैं।

और एक पुरुष बैठे हुए है। जिन्होंने ब्लैक शर्ट पेहनी हुई है।

अलमारियां बनी हैं जिसपे बहोत सारी बुक्स रखी हैं। दुकान पर तीन पुरुष खड़े हुए हैं।